जो वार्ड विकास केन्द्र जो नगर निगम के अन्तर्गत आते हैं वार्ड संख्या तीन का है।

दुकान के बाहर एक बहुत ही बड़ी बोर्ड लगाई गई है जिसमें साक्षी क्लोथ स्टोर लिखी गई है और अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है।

इस चित्र में दिखाया गया दृश्य कोई पार्क का है।

कुछ मूर्ति भी बनाए हैं कलाकारों ने।

यह एक मछली दुकान का दृश्य है जिसमें तीन बल्ब सामने की ओर एक बल्ब पीछे की ओर लटकता नजर दिखाई दे रही है।

इसमें दुकान के ऊपर एक लाल कलर की बोर्ड लगी है बीच में पांडे दुकान लिखी है।

इसमें आमने सामने दो बहुत ही पुरानी बिल्डिंग का तस्वीर है।

बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां नजर आ रही हैं जो बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग किया गया है।

यह एक विद्या मंदिर का दृश्य है जिसमें बहुत सारे बच्चियां एक से एक हाथ जोड़ कर खड़े गोल बना घेरा बना कर खड़े हैं।

लकड़ी के रैंक पे बने हुए डब्बो में बहुत सारे मोबाइल के पार्ट्स रखे गए हैं।

यह एक ज्वेलर की दुकान है जिसमें सोना चांदी और बहुत सारे मेटेलिक आभूषण बनाए जाते हैं रखे जाते हैं और बेचे जाते हैं।

एक पौधा बिना पत्ता का भी नजर आ रहा है लगता है एकदम सूख गया हो।

इस गेट के ऊपर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमे लिखा गया है प्रिंस डांस एकेडमी ।

यह एक ओएसिस हेयर ब्यूटी सैलून है।

बाहर एक स्कूटी खड़ी है।

इसमें एक कार्यक्रमी मंदिर को पेंट करते नजर आ रहे हैं।

ऊपर कुछ गुलदस्ते जैसे बनाए गए हैं।

बहुत सारे लोहे की बनी पोल नजर आ रही है।

पीछे की ओर एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है जिसमें पानी भी दिखाई दे रहा है।

एक बहुत ही बड़ी खिड़की नजर आ रही है।

ऊपर बालकनी जैसा भी है।

इस छोटी मंदिर के गुंबज मे एक सुंदर आकृति महादेव के शुभ स्वरूप में महाकाल बाबा की है।

एक कार्यक्रम में बोर्ड के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं।

कुछ ठेले पे समान बेचते लोग नजर आ रहे हैं।

टी_वी देखते नजर आ रहे हैं।

जिसमें बाहर ऊपर की ओर एक बोर्ड लगी है।

गोल घेरे पे बहुत सारे गुलदस्ता लगाए गए हैं।

दो जगहों पे के रूप में चित्र बनाया गया है।

इस चित्र में पेड़ के नीचे एक घर है।